और एक रोड दिख रहा है सामने से जाता हुआ चर्च के बाजू में एक लाइट का खंभा दिख रहा है।

ये एक फोटो में लड़का बैठा हुआ दिख रहा है जिसने पिंक कलर की शर्ट पहनी है ब्लू कलर की जींस --

रखी हुई है उनके नीचे वो थमाकॉल आइस क्यूब जैसा पड़ा हुआ दिख रहा है।

यह फोटो में मिठाई का दुकान दिख रहा है जिसमें बहोत सारी मिठाइयां रखी हुई दिख रही है अंदर कांच के इसमें।

ये फोटो एक हॉल की दिख रही है जिसमें बहुत सारे लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं कुर्सी का कलर ब्लू है।

बाहर कुछ लोग टेबल पर बैठे हुए हैं दुकान के बाहर बहुत सारी गाड़ियां दिख रही है एक ऑटो --

फोटो में एक अह लड़का झूला झूलते हुए दिख रहा है जिसने ब्लू कलर की पैंट और कलर की टी शर्ट पहनी है।

झाड़ दिख रहा है नीचे बहुत हरी हरी घासें हैं ऊपर नीला आसमान नजर आ रहा है।

ये फोटो में मुझे एक मच्छी का दुकान दिख रहा है जिसमें एक लड़का टेबल पर बैठा हुआ दिख रहा है।

ये एक इमेज में मुझे दिख रहा है कोई तो एक बाबा है उसके चारों तरफ लो लोग चुनरी लेके खड़े है।

यहां दो लड़कियों ने हाथ में दिया रखा हुआ दिख रहा है।

वहाँ पर लाइट का बोर्ड दिख रहा है जिसमें प्लगस लगाए गए हैं नीचे ब्लू कलर के ड्रावर दिख रहे हैं उसमें समान रखा हुआ मुझे दिख रहा है।

ये फोटो में तीन लड़के खड़े हुए दिख रहे जो मिरर में अपने सेल्फी लेते हुए दिख रहे है एक के हाथ में --

पोज में खड़ा हुआ दिख रहा है पीछे भी एक लड़का खड़ा हुआ दिख रहा है ये जिम का कोई फोटो दिख रहा है।

ये फोटो में एक स्टेज दिख रहा है जिसमें स्टेज के ऊपर दो लोग खड़े हुए हैं।